आस-पास पेड़ पौधे हैं। यहां पे काले रंग के तार लगे हुए हैं। बिल्डिंग का रे रंग नीला है।

यहां पे बहोत सी कुर्सियां पड़ी हैं और मेज भी है। यहां पर दो बाइक खड़ी हुई हैं।

यहाँ पे एक आदमी ने सफेद रंग का छोटा सा फूल हाथ में पकड़ा हुआ है।

यहां पे एक चेयर पड़ी हुई है। यहां पे हरे रंग की दरी बिछी हुई है। यहां पे चार पोस्टर लगे हैं।

यहां पे एक टावल भी टंगी है। ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

यहां पर एक जिम है | यहां पर बहुत से लोग जिम कर रहे हैं|

यहां पे टावर लगे हैं जिनपे बहोत से तार लगे हैं।

यह एक उत्तर प्रदेश अगिनशमन सेवा है।

यहां पे एक गार्डन बना हुआ है। यहां पे झूला भी लगा है।

बिल्डिंग काफी बड़ी है सफेद रंग की है यहां पर पेड़-पौधे भी बोहोत लगे हुए हैं आसमान नीले रंग का है।